पिक्चर में जैसा कि आप देख सकते है यहां कोई एक हॉस्पिटल का रूम है जहां पर काफी सारे--

पिक्चर में जैसा कि आप देख सकते हैं यहां कोई एक कबाड़खाना है जहां पर काफी सारे टी_पी_के मोटर्स --

के अंदर एक स्टेज भी बनाया गया है स्विमिंग पूल के अंदर--